पांच छ: गो मोटरसायकल लगा हुआ है और एक आदमी खडा है और एक बिजली खुटा--

सरकारी काम चल रहा है और ये यहाँ पर--